पिक्चर में दिखाया गया दृश्य सिनेपोलिस सिनेमा हॉल का है।

कुछ लोग जमीन पे बैठे ध्यान लगाए हुए बैठे हैं।

महाभारत कालीन अर्जुन की मूर्ति दिखाई दे रही है।

जिसके बगल में एरो का आउटलेट भी है।

पिक्चर में दिखाया गया दृश्य श्री दामोदर श्री राधा दामोदर जी मंदिर का है।

यह पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल नाम की कंपनी का है।

पिक्चर में हमें एक स्कूल का--